तस्वीर में एक अ जुलूस है और उसपे एक ट्रैक्टर है।

इस दरिया में कुछ पत्थर भी नजर आ रहे हैं।

दुकान के अंदर एक लड़का कुर्सी पर बैठा हुआ है एक लड़का खड़ा हुआ है।

एक टी_वी भी लगाया हुआ है और वहां पर एक बैग भी है।

सामने दूर एक और छोटा सा मकान नजर आ रहा है।

यह तस्वीर एक इमारत की है इमारत के बड़े बड़े दरवाजे बनाए हैं लोहे--

ए_टी_एम के बाहर दो आदमी है एक आदमी के हाथ में मोटरसायकल है।

लड़के भी हैं लड़कियां भी हैं कुछ लड़कियों ने यूनिफॉर्म पहनी हुई हैं।

आ इसका छत को लोहे का बनाया हुआ है।